और वो भईया जी सीमेंट गेर रें हैं उन्होने जिन्होंने हरे रंग की कमीज पहन रखी है वो भईया जी खींच रें हैं और ये कैप वाले भैया भी इधर से हथोड़े से खींच रें हैं।

ये अंकल जी खड़े हुए है। इन्होंने ब्लैक कलर की चेयर पड़ी हुई है। उधर सामने पानी का कैम्पा पड़ा हुआ है।

इधर लाल रंग लाल रंग में कार्पेट बिछा हुआ है उधर मशीन है।